c और c ++ में function calls पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम function calls के प्रकारों के बारे में जानेंगे जैसे
call by value कॉल by value call by reference कॉल by reference
हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ उबंटू operating system version 1110
gcc और g ++ compiler version 461
functions call by value के परिचय के साथ शुरू करते हैं
यह function में arguments पास करने की पद्धति है
जब हम value द्वारा variable pass करते हैं तो यह variable की copy बनाता है
function में पास करने से पहले
function के अंदर arguments में किए गए बदलाव function में वैसे ही रहेंगे
यह function के बाहर प्रभावित नहीं होंगे
function call by value पर program देखें
मैंने editor पर program पहले ही टाइप कर दिया है मैं केवल इसे खोलूँगा
कृपया ध्यान दें हमारा फाइलनाम callbyval c है
इस program में हम संख्या के in की गणना करेंगे अब मैं code समझाता हूँ
यह हमारी header file है
यहाँ हमारे पास एक argument के रूप में int x होते हुए function cube है
इस function में हम x के in की गणना करेंगे और x की value return करेंगे
यह हमारा main function है
यहाँ हम n को 8 value देते हैं n एक integer variable है
फिर हम function cube को कॉल करते हैं
और n की value और n के घन को print करेंगे
और यह हमारा return statement है
अब program को निष्पादित करें
अपने keyboard पर ctrl alt और t कीज एक साथ दबाकर terminal window खोलें
कंपाइल करने के लिए type करें gcc space callbyval c space hyphen o space val enter दबाएँ
अब type करें/val dot slash val enter दबाएँ
output प्रदर्शित होता है cube of 8 is 512
अब हम function call by reference देखेंगे
अपनी slides पर वापस जाएँ
यह function में arguments पास करने की अन्य पद्धति है
यह पद्धति value के अंदर argument का पता copies करती है
function के अंदर arguments में किए गए बदलाव उनको बाहर प्रभावित कर सकते हैं
इसमें हमें arguments को pointer प्रकार के रूप में घोषित करने की जरूरत है
function call by reference पर एक उदाहरण देखें
ध्यान दें कि हमारी file का name callbyref c है
यह stdio h हमारी header file है
उसके बाद हमारे पास फंक्शनswap है
यह function variables की values बदलेगा
a की value b की value में और उल्टे क्रम से संचित होगी
आप देख सकते हैं कि function में passed arguments pointer प्रकार के होते हैं
यहाँ हमने एक integer variable t घोषित किया है
पहले a की value t में संचित होती है
फिर b की value a में संचित होती है
और फिर t की value b में संचित होती है
इस तरह values बदलती हैं
यह हमारा main function है
यहाँ हमने दो integer variables i और j घोषित की हैं
फिर हम य़ूजर inputs के रूप में i और j की values लेते हैं
ampersand एम्प्रसैंड i और ampersand एम्प्रसैंड j i और j के memory का पता देगा
पहले हम swapping से पहले की values print करेंगे
फिर हम swap function को कॉल करेंगे
और हम swapping से बाद की values print करेंगे
और यह हमारा return statement है
अब program को निष्पादित करें
अपने terminal पर वापस जाएँ
कंपाइल करने के लिए type करें gcc space callbyref dot c space hyphen o space ref enter दबाएँ
अब type करें dot slash ref enter दबाएँ
हम देखते हैं enter the values मैं 6 और 4 प्रविष्ट करूँगा
output प्रदर्शित होता है before swapping 6 and 4
after swapping 4 and 6
अब देखें कि c ++ में समान program निष्पादित कैसे करें
मेरे पास code है इसके माध्यम से करें
यह दूसरा program है function callbyreference
ध्यान दें कि हमारी file का name callbyref cpp है
code के माध्यम से करें
यह iostream हमारी header file है
यहाँ हम std namespace का उपयोग कर रहे हैं
function declaration c ++ में समान है
इसमें हम ampersand x और ampersand y के रूप में arguments pass करते हैं
यह x और y का memory पता देगा
फिर हम values को swap करेंगे
बाकी code हमारे c code के समान है
printf statement cout द्वारा replaced होता है और scanf statement cin द्वारा replaced होता है
अब program को निष्पादित करें terminal पर वापस आएँ
कंपाइल करने के लिए type करें; g ++ space callbyref cpp space hyphen o space ref1 enter दबाएँ
अब type करें dot slash ref1 enter दबाएँ
यहाँ यह प्रदर्शित होता है
enter values of a and b
मैं 4 और 3 प्रविष्ट करूँगा
output प्रदर्शित होता है
before swapping a and b 4 and 3
after swapping a and b 3 and 4
इसी के साथ हम इस tutorial की समाप्ति पर आ गए हैं
अपनी slides पर वापस जाएँ
संक्षेप में इस tutorial में हमने सीखा
function call by value
और function call by reference
नियतकार्य के रूप में c ++ में call by value का उपयोग करके
संख्या के घन की गणना करने के लिए समान प्रोग्राम लिखें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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
यह भारत सरकार एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित है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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद